यहां पर एक गेट भी दिख रहा है जो कि खुला है।

यह एक टैटू दुकान है जहां पर एक पंखा नजर आ रहा है।

एक बड़ा सा गमला भी है जोकि मिट्टी का है।

यहं एक जगह है जहां पर एक लड़की लगता है डांस कर रही है।

बगल में भी एक फूल है और यहां पर बहुत सारे इंसान भी बैठे हुए हैं।

एक मौली धागा भी बांधा हुआ है।